नमस्कार आप जिसे देख सकते है। यहा एक बस जा रही है और ये रस्तेमे आप लेफ्टसाइड देखिये की रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है।

नमस्कार आप इसे देख सकते है। ये पुरानी बस अड्डा है।

और ये मुंबई के यानि महाराष्ट्रा के बस खड़े हुए है। जो ये गाव जाने वाले बस है। आप देख सकते है की बस के ऊपर स्टैंड है। तो कभी कभी व्यक्ति जो है। उसके उपर भी बस के उपर भी बैठ जाते है। पर वो खतरनाक --

और यहा है जो है पिक्चर आप देख सकते है की अमरुद के झाड के पीछे से निकाला गया है और ये बस शायद नागपुर या महाराष्ट्रा के है।

नमस्कार आप इसे देख सकते है यह पिक्चर जो है बहुत ही ऊपर से लिया गया है और ये पिक्चर देखिये आपके बस के टेंट के पार्किंग है।